सामने एक बड़ा सा सेल्फ लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे काउंटर बनाया हुआ है।

काउंटर के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और कुछ अंडे रखे हुए हैं।

बिल्डिंग के नीचे तीन चार आदमी फोटो खींचा रहे हैं और गेट पर वाइट और ब्लू कलर का बैलून सजा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर दो तीन गाड़ियां पार्क है।

सामने एक सीढ़ी दिख रहा है जोकि ऊपर जा रहा है ऊपर एक दुकान है। जिसमें शटर लगा हुआ है।

और नीचे एक मोमोज का शॉप है जिसको बैलून से डेकोरेट किया गया है।

बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट किया गया है।

बिल्डिंग के नीचे एक दो कार और कुछ बाइकें पार्क हैं।

अ बहुत सारे शीशे भी दिख रहे हैं दीवार पर और कुछ शटर भी दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में एक मंदिर दिख रहा है जो की बहुत पुराना हो गया है मंदिर के पोल में बहुत सारे काले काले धब्बे बन गए हैं।

मंदिर के सीलिंग पर एक पंख लगा हुआ है और मंदिर का सीलिंग भी बहुत गंदा हो गया है।

इस फोटो में एक शॉप दिख रहा है जिसके छत पर मेटिक हार्डवेयर लिखा हुआ है।

बहुत सारे सेल्फ लगा हुआ हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक का समाने रखी हुई हैं।

बिल्डिंग के बाहर दो बाइक पार्क है और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मार्बल का सामान बिक रहा है।

आस पास बहुत सारे गमले दिख रहे हैं।

एक टंकी रखा हुआ है और दो तीन फिल्टरें लगी हुई हैं एक बेसिन भी दिख रहा है।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

दीवारों का कलर सफेद दीवार पर दो तीन खिड़कियां और दो दरवाजे दिख रहे है।

रेलिंग के बगल में बहुत सारे पेड़ और पौधे उगे हुए हैं। जिसके ऊपर व्हाइट और ग्रीन कलर का कलर किया गया है।

सामने एक सोफा दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का है उसके सामने एक फिशपोट दिख रहा है और दो तीन आदमीया लोग खड़े हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहे हैं यहां पर बहुत छोटे छोटे घास और पौधे उगे हुए हैं।

कुछ बिल्डिंग दिख रहे हैं जो कि पीला और व्हाइट कर के हैं।

इस फोटो में सामने एक स्टेज दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।